सामने में दुकान के नीचे एक लाइट टंगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने में शुभ-लाभ लिखा हुआ दिखाई दे रा है।

यहां मुझे स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल के अंदर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं फूल के वो दिखाई दे रहा है एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

झाड़ियां दिखाई दे रहा है एक बुलेट दिखाई दे रहा जो बहोत शानदार और ब्लैक कलर का है जिसमें लिखा हुआ रॉयल बुलेट --

पहाड़ दिखाई दे रहा है जंगल दिखाई दे रहा है झाड़ियां दिखाई दे रहा है असमान दिखाई दे रहा है पंछी दिखाई दे रहा --

स्कूल बैच दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रहा बहोत सारे लोग दिखाई दे रहा है सीढ़ियां दिखाई दे रहा ग्राउंड दिखाई दे रहा--

ग्रीन व्हाइट ऑरेंज कलर के बैलून दिखाई दे रहा है एक स्कूटी दिखाई दे रहा ब्लू कलर का एक रेड कलर का बड़ा सा गाड़ी दिखाई दे रहा--

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो लाइन से खरें है फोटो खींच रहे हैं दो बाइक दिखाई दे रहा है सामने में एक घर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।